लोग यहाँ पर पिक्चर देख़ने के लिए आते हैं जो पिक्चर नई निकलती है बॉलीवुड हॉलीवुड में यह सबसे पहले सिनेमा हॉल में आया करती है इसलिए लोग यहाँ पे टिकट लेकर सिनेमा हॉल का मजा लेने --

यहाँ पे वेजिटेबल और वेजीटेरियन और नॉन-वेजिटेरीअन खाना मिलता है।

यह तस्वीर एक रोड की है जहाँ पर रोड के किनारे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है और बाइक भी खड़े है रोड के किनारे एक छोटी सी वाइट कलर की कार खड़ी है और यह बहुत ही पुराना मॉडल की कार है।

जैसे की केला अंगूर संतरा सेब वगेरह यह हमारे बॉडी के लिए बोहत ही लाभदायक है हमें फ्रूट्स को खाना चाहिए रोज।